की यहाँ पे हमें लकड़ी के फट्टे वगैरा लगा के रखे हैं काफी जोड़ जोड़ के ई कीलें वगैरा ठोक कर उसमें और वहाँ पे हमें सरिया बांध के अ काफी बिछाए गए है वहाँ पे।

बनाया जा रहा है मसाला गिट्टियों वाला और यहाँ पे बहोत सारे हमें मजदूर देखने को मिल रहे जो कि वहाँ काम कर र --

में हम देख सकते हैं की यहाँ पे हमें खाली साइड प्लॉट बड़ा सा देखने को मिल रहा है जहाँ पर हम देख पा रहें हैं की काफी सारी मिट्टी वगैरा पड़ी हुई है और यहाँ पे काफी सारे लोग --

इधर से दो लड़के जा रहे है और हम देख पा रहे है नीचे की तरफ एक व्हाइट कलर की वेन सी खड़ी हुई है और साथ मे कुछ बाइक भी खड़ी हुई जो वैन --